ये एक हराभरा मैदान है जो की देखने में बहुत अच्छा लग रहा है इसके पीछे पेड़ लगा है पानी है यहाँ और पत्थर है जो की देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा --